अ मदद की जा जाती है उन्हें हम देख सकते हैं की यहां पर फिलहाल आ --

और कोई खेल खेला जा रहा है मैदान में दो ऑटो-रिक्से नजर आ रहे हैं देख सकते हैं की यहाँ पे एक पेड़ के निचे दो बच्चे फोन में कुछ देखते हुए नजर आ रहे हैं।

डांस का झोला मौजूद नजर आ रहा है और रबर का जो बेड वाला झोला होता है जहाँ पर बच्चे कूदते हैं और यहाँ पर कई सरे लोग दिखाई दे रहे हैं रंग बिरंगे --

यहाँ पर हमें एच.डी.एफ.सी बैंक को देख सकते हैं जहाँ पर कई सारे लोग अ ज्यादा तर एच.डी.एफ.सी में अ --